कुछ लोग भी है और ऊपर मे भी दीवारे दी गई है पिलर भी नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में एक बस स्टैंड दिख रहा है और सामने मे एक बोर्ड भी लगा है बोर्ड मे परदूषण रहित दीपावली माई लिखी हुई है।

अ बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है आसमान दिख रहा है कुछ लोग भी दिख रहे है एक आदमी हेलमेट लगाए हुए दिख रहा--